यहां पर एक ए_सी रखी हुई है।

और यहां पर बहोत सारे दरवाजे भी हैं।

यहाँ पर दो बड़े खम्भे भी हैं।

बहुत सारी व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं।